यह एक बहोत बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के अंदर एक गुफा बना है।

यहाँ पर हम लोग गए थे तब यहाँ कोई बस नहीं था बस एकदम सुनसान था और हम लोग गए थे तो कुछ नहीं मिला खाने के लिए अच्छी सुविधा नहीं है होटल में जा के खाना पड़ा बस स्टेशन न हो कर--

यहाँ एक अ आंगनबाड़ी जैसे लग रहा है मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा है।

भाई है और ये भाई हाथ को बांधे हुए एक बस के आगे में खड़ा है।

को तीन छत से बनाया गया है और बड़ा ही--

यह एक ट्यूशन क्लास है और इस ट्यूशन क्लास में एक टीचर अपने बच्चो को विद्यार्थीयो को ट्यूशन दे रहा है।

खाना बहोत ही स्वादिष्ट होगी--

बड़ा ही सुन्दर आड़ा-बाड़ा है।

ये कथक डांसर है और बड़ा ही सुन्दर साड़ी पहने हुए है कत्थक वालो ने--

यह एक के कोटक बैंक है जैसे लग रहा है।